दी गई तस्वीर में एक नदी दिखाई दे रही है।

तस्वीर में बहुत सी मोटर व्हीकल दिख रहे हैं वही सामने --

तस्वीर में एक बास्केट ग्राउंड नजर आ रहा है।

दी गई तस्वीर में एक बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा है।

वहीं दूसरी तरफ बहुत सी शिवलिंग दिखाई दे रही है।